यहां पर दो बच्चा लोग दीख रहे हैं वहां पे दो ऑटो दिख रहा है वहां पे बहुत ज्या महिला है.

बहुत सारे महिला भी दिख रहे हैं आदमी भी दिख रहे है पेड़ भी है.

यहां पर एक आदमी कुछ काम कर रहा है एक आदमी टंकी के पास बैठा हुआ है.

बहुत सारे एक पिलर भी दिख रहा हे। बहुत सारे आदमी भी है। बहुत सारे महिला भी है।

दो महिलाएं दिख रही है यहां पे दो आदमी दिख रहा है उसमे मेंहदी लगा रहा है.

इसमें लाल रंग का कुर्सी भी उधर है.

मंदिर हे मंदिर मे शिवलिंग हे शिवलिंग और नाग हे.

यहाँ पे बहुत सारे खटिया भी दिख रहा है बहुत सारे मशीन भी दिख रहा है।

छह महिला लोग हैं चार मर्दाना हैं.

यहां पर बहुत सारे मतलब मशीन दिख रही है कुर्सी भी दिख रहा है पीला रंग का टेर ओर काला रंग का टेर भी दिख रहा है टेबल भी है.

बहुत सारे आदमी दिख रहे है बहुत सारे झोपड़ी भी दिख रहे हैं.